और उसमें एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खुदा हुआ है।

ये एक एस.बी.आई. बैंक है और इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इसका दूसरा फ्लोर भी बहुत अच्छे से --

एक मूरत भी बनी हुई है और उसके ओ दूसरी साइड में बड़े-बड़े ब्रक्ष भी खड़े हुए हैं।

अपने पीछे की ओर पकड़े हुएऔर अपना एक हांत को आगे किये हुई है।

यह एक नदी सी है नदी के पास में एक एलोवेरा का पौधा भी लगा हुआ है उसके पास में एक सुखी लकड़ी पड़ी हुई है और उसमें बहुत --

यहाँ पर एक बड़ा-सा रोड है रोड के दूसरी ओर एक लोग जाते हुए और उनके हाथ में एक अम्ब्रेला है और वो --

ए.सी. भी लगी हुई है और उसके द फर्स्ट फ्लोर पर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर अमरकोना लिखा उसके दूसरे --